ये एक बोहोत ही शानदार सा मंदिर है जिसके अंदर दो मूर्ति रखी हुई हैं। इसका कलर --

और लोग कपड़े खरीदने के लिए दूर तरह से आते हैं।

और बाजू में उसके अन्दर विपुराण और कुछ किताबें रखी हुई है। यहाँ पर चटाई बिछी हुई है। मस्जिद बोहत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है।

वो सही हो जाती है। यहाँ पर हमें कुछ गाड़ियां देखने को मिल रही है जैसे कि बाइक स्कूटी और सामने एक रिक्शा है जिसे वो रिपेयर --

वाह वाह क्या सुंदर गार्डन है। ये बोहत ही प्रभावशाली और सुंदरता से बनाया गया है। इसे बोहत ही मन और शांति से सजाया गया है।

के आस-पास जो है वो एक प्यारा सा खूबसूरत सा बोहत ही बेहतरीन पौधा है जिस --

ये जो पार्क है वो ग्रीन कलर का है और यहाँ आस-पास बाइक की पार्किंग हुई भी है और सामने दो बिल्डिंग्स है। एक ऑरेंज कलर की है। एक ऑरेंज कलर की उसका पट्टी हुई है।

इसके तीन दरवाजे है एक ऊपर दरवाजा है एक ऊपर एक छोटी सी खिड़की है और कंस्ट्रक्ट हुआ वा है बिल्कुल ये मस्जिद के आस पास सुन सन्नाटा है। यहाँ पर मुस्लिमस लोग --

और ये गाड़ी बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए ये बहुत ही गाड़ी जो है काम की चीज है जो बिल्डिंग के लिए।

ये एक डी-मार्ट की तरह है जहाँ पे गोदरेज व्हर्लपूल टी.सी.एल और बजाज --